कितने अच्छे प्रकार से खिड़कियां गेट आदि प्रकार के सभी वस्तुए बनी हुई है --

स्कूटी सही प्रकार की वस्तुएं ठीक होती हैं और गैरिज में ही हमें अपना सामान सही कर --

ये तो पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप गाड़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक है अगर हमारे इंडिया में पेट्रोल पंप नहीं हो --

केले सेब आदि प्रकार के फल रखे हुए हैं।

ये तो यार खेती हो रही है यार गोभी की यार गोभी खाने में कितना मजा आता है नहीं गोभी की पकौड़ी खाओ सब्जी खाओ।